बहार काफी लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ मुझे कुछ शॉप दिखाई दे रही है।

धो-धो कर नीचे रख रही है। लड़की ने येल्लो कलर के के सूट पहना हुआ है। लड़की रेड कलर की चेयर पर बैठी हुई है। लड़की के सामने जालीदार बालकनी बनी हुई है।

इस इमेज में मुझे एक स्टेज दिखाई दे रहा है स्टेज पर एक बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है और स्टेज पर कुछ लोगो की भीड़ दिखाई --